और गार्डन में बीच में बोहत अ हरे-भरे फ्लावर्स के --

प्राचीन मूर्तियाँ लगी है और अलग-अलग देवी की मूर्तियाँ है और वहाँ से प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार से लोग --

खूब प्यारा लग रहा है और साइड में बहुत सारे झूले लगे हुए खम्बा है।

और हरे-भरे झाड़ है।

एक बड़ा-सा चौक है।

और ऐसे अम्म अ स्टूल पे बैठी हुइ है।

और अगल-बगल में बहोत सारे लोग खड़े हुए है और बोर्ड पे होटल्स का नाम है।

एक बहुत बड़ी कंपनी है।

लॉन में एक लड़का खड़ा हुआ है।

और खेत में बहोत बड़ा घर है और साइड में बोहोत बड़े-बड़े पेड़ है ।

पांच बाइक खड़ी हुई है|

और ये और टेबल पे वो जो बोटल है बोटल रखी हुई है।

और उसके ऊपर से ब्रिज है।

ऑफिस में बहोत सारी कुर्सियाँ है ।

जो कि उर्दू में है।

दो जेंट्स खड़े हुए एक छोटी-सी लड़की है।

बैंक के आगे में --